इस छवि में जैसा कि में देख पा रही हूँ कि यह बहोत सारी इसमें पेड़ पौधे हैं और में देख पा रही हूँ कि यह --

इसमें नीचे एक ही तरफ से इस फोटो को लिया गया है और इसमें काफी सारी जड़ों को मैं देख पा रही हूँ पेड़ के जड़ों को और इसमें काफी बढ़िया अस नीले --

इस छवि में राजकीय मेडिकल कॉलेज जालोन की एक छवि देख पा रही हूँ| यानी का मेडिकल कॉलेज की छवि है।

इस पिक्चर में भी मैं बगीचे की फोटो देख पा रही हूँ जहां पर छोटे छोटे पौधे हैं और इस में भी सफेद और गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल उगे हुए हैं। जैसा --

इस छवि में मैं एक इमारत देख पा रही हूँ जो कि सफ़ेद नीले रंग की यह इमारत है।

इस छवि मे मैं रोड देख पा रही हूँ। जिसके अगल बगल बहुत सारी दुकानें मैं देख पा रही हूँ। तरह-तरह की दुकान है यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे बिल्डिंग भी हैं। साथ मे पेड़ भी है।

और मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारी गड़िया है और लोग भी यहाँ पे आ जा रहे हैं।

इस छवि में मै एक इंसान को देख पा रही हूँ और इंसान के पीछे में भी मैं काफी सारे लोगो को देख पा रही हूँ।

साथ ही में यह इंसान फोटो क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं लंबा-सा तिलक लगाए हुए और गर्दन पे उन्होंने एक हैडफ़ोन भी रखी हुई है साथ में बॉटल भी पकड़े हुए हैं और अगल-बगल में पेड़ -पौधे हैं।

और चेहरे पे उन्होंने पैक लगाया पीछे की तरफ में मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारे टॉवेल्स रखे हुए हैं और इस एक इंसान के बगल में भी एक आदमी है जोकि मोबाइल चलाते हुए दिख देख पा रही हूँ।

यह छवि मै श्री राजेस्वरी बुक लिमिटेड सेंटर की देख पा रही हूँ यानि कि शॉप की देख पा रही हूँ । जहाँ पे बुक संबंधित सामग्रियाँ रखी हुई हैं ।

पिक्चर में मैं मंदिर की छवि को देख पा रही हूँ। जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि इसमें महिला दर्शन करते हुए नज़र आ रही हैं।